घाँस दिख रही है चारों तरफ हरी कलर के पेड़ दिख रहे है।

चारो तरफ घाँस ही घाँस पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे है पत्ते दिखाई दे रहे है पेड़ो की पत्तियों का रंग हरा दिख रहा है आसपास भी पेड़ है घाँस बनी हुई दिखाई दे रही है।

लाल रंग की ईटा दिख रही है।

एक बडी सी बिल्डिंग है बिल्डिंग का रंग सफ़ेद दिख रहा है चारो तरफ हरे कलर के बी पेड़ दिख रहै है पेड़ के पत्तियों का रंग दिख रहा है चारो तरफ काले रंग की दहनियां दिख रही है।

पेड़ दिख रहा है पेड़ के पत्तियों का रंग हरा दिख रहा है पहाड़--

इन्है सफ़ेद शर्ट नीला गॉगल पहना हुआ है एक नीले ने शर्ट पहना है अन्दर घुस रहा है एक पेड़ दिख रहा है पेड़ के ऊपर पत्तो का रंग हरा दिख रहा है चारो ओर घाँस दिख रही है।